और कलर फुल कारपेट बिछे हैं।

इस चित्र में हमें एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है पहाड़ के ऊपर छोटी-छोटी चट्टाने हैं बड़ी-बड़ी चट्टाने हैं कुछ सूखी घास है।

कमरे के परधे कथाई रंग के है कमरे पे एक पलंग है।

बस पीले रंग की है सामने रेलिंग है आजू-बाजू बहुत सारे पेड़ हैं।

इस चित्र में हमें एक सफेद रंग का घर दिखाई दे रहा है।

पीछे मैदान मैदान में हरी रंग की घासे--

दो औरत नीली साड़ी पहनी है एक आदमी खड़ा है।

बेंच के ऊपर कुछ लड़के बैठे हुए हैं लड़के नीले रंग के यूनिफॉर्म पहने हैं।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

फूल पीले और लाल रंग के हैं ऊपर झूमर है।

कुछ लोग खड़े हैं बड़े-बड़े पेड़ हैं ऊपर आसमान है।

तो काले और सफेद रंग के कपड़े पहनी आसपास सूखे घास है।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

रास्ते के अ दोनों तरफ बहुत सारे कमरे है।

स्कूटर सफेद रंग का है कुछ काले रंग की गाड़ियां हैं एक ऑटो --

इस चित्र मे हमे एक बोहोत बड़ा मोल नजर आ रहा है।

कार खड़ी है एक कार सफेद रंग की है एक कार काले रंग की है।

कमरे की दीवार सफेद रंग की है कमरे में एक पंखा--

दो लोग खड़े हैं एक औरत खड़ी है औरत ने नीले रंग की साड़ी पहनी है।

काली रंग की बाइके कुछ खजूर के पेड़ हैं आस-पास कुछ पेड़ है एक लाल रंग का स्टेच्यू है।

आदमी नीले रंग की शर्ट पहनना काले कलर का स्कूटर खड़ा पीछे पेड़ है।

नीले और हरे रंग के हैं कुछ लोग खड़े हैं बात कर रहे हैं पीछे दरवाजा है लोहे--

इस चित्र में हमें एक बहुत बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है हॉल में बहुत सारे पै--

कुछ लोग खड़े है एक बोर्ड लगा हुआ है।

इस चित्र में हमें एक कमरा दिखाई दे रहा है कमरे के अंदर प्लास्टर नहीं है।